ये एक बहुत ही बड़ी नदी की फोटो दिखाई दे रही है नदी के उस पार कुछ मकान भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये एक किसी गार्डन की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर ये एक कच्चा मैदान जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर छत के ऊपर एक झंडा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है और सामने की ओर एक बिल्डिंग बनी हुई नजर आ रही --

और एक मकान जैसा कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा है।

ये एक मॉल की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर बहोत सारी छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई दिखाई दे रही है।

ये किसी मैरिज हॉल के बाहर की तस्वीर दिखाई दे रही है ये एक रॉयल पैलेस के बाहर की फोटो है।

ये सभी अपनी अपनी चेयर और टेबल पर बैठकर ऑनलाइन क्लास लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर बहोत सारी लैंप लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और बहोत सारे झूमर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये किसी घूमने की जगह की तस्वीर दिख रही है।

ये किसी गार्डन की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर एक बहोत ही बड़ा स्विमिंग पूल बना हुआ नजर आ रहा है।